राउंड दिख रहा है ये --

प्रोग्राम दिखाई दे रहा है हो --

गेट के बाहर गाड़ी खड़ी हुई है वो भी खड़ी है आसपास बड़े-बड़े पेड़ लगे हैं।

गेट दिखाई दे रहा है मछलियाँ बेचती --

पास में एक झोपड़ी बनी हुई दिखाई दे रही है।

वहाँ मैदान है सामने बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं ये मैदान में और एक नाव रखी हुई दिखाई दे --

स्कूल का प्रोग्राम चल रहा है स्कूल का ये प्रोजेक्ट दिखाते हुए बच्चे कुछ टीचर हैं तीन --

उनको ये बच्चे पीछे खड़े हुए हैं जो अपना प्रोजेक्ट दिखाते हुए दिखा रहे हैं वॉल्यूम लगे हुए बढ़िया डेकोरेशन कर रखा है क्लास --

ये फूलों की दुकान है ये फूल रखे हुए हैं मालाएँ रखी हुई है यहाँ सुंदर-सुंदर फूल माला रखी हुई दिखाई दे रही है फूलों --

मॉल सा दिखाई दे रहा है पीछे भी दुरी पर सामान दिख रहा है जमा हुआ आगे भी शोकेस में सामान जमा हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रॉडवे --

ये शेड बना हुआ है पूरा --

सुंदर-सा डेकोरेशन दिख रहा है ये औरमल --

बड़ी बड़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग में दुकाने लगी हुई दिखाई दे रही है रोड पर --

आगे दो जालियां बनी हुई है जिस पर दो लड़के चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आसपास पेड़ दिख रहे बड़े-बड़े लगे हुए --

और कुछ पब्लिक आते-जाते दिखाई दे रही हैं ये दूरी पर कुछ दुकानें बनी दिख रही हैं।

मुझे बड़ी सी नदी दिख रही है नदी है बड़ी सी इसमें बहुत सारी नाव है नदी में बहुत सारी नाव दिखाई दे रही हैं नदी में।

ये बहोत सारी डेकोरेशन के सामान की दकानें दिखाई दे रही हैं ये --

सामने दुकान पर फ्लावर पॉट रखे है बड़े-बड़े सुंदर सी फ्लावर पॉट रखी हुई है ये फ्लावर की बुके बने हुए है।

जैसी दिखाई दे रही है गेट लगा है बड़ा सा एक बाउंड्री दिख रही है गाड़ी भी खड़ी दिख रही है थोडीसी।

बाउंड्री के अंदर एक गेट लगा हुआ है और ये सामने फैक्ट्री बनी हुई दिखाई दे रही है।

का ये की ये बड़ी सी फैक्ट्री सी दिख रही है बनी हुई है।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

टेबले लगी है बैठने के लिए --

बना हुआ है सामने प्रेयर करते कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे हैं चारों --

खड़ा हुआ है पेड़ के ऊपर ये पेड़ --

इस बिल्डिंग को बनाने का काम चालू है काम चल रहा गाड़ी खड़ी हुई है नीचे सामान पड़ा हुआ --

वहा से पूरा जाल बना हुआ है पूरा बिल्डिंग का ऊपर से नीचे तक जाल बना हुआ है।

और ऊपर के फ्लोर पे नीले कलर की पन्नी से पूरा कवर हो रहा है नीले कलर की --